लिनक्स में simple filters के इस tutorial में आपका स्वागत है
यहाँ हम head head tail tail sort sort cut cut और paste paste के बारे में सीखेंगे
यह सारे command line text मनिप्यूलेशन tools हैं
यदि आप terminal पर # हैशचिन्ह देखते हैं तो आपको उन commands को निष्पादित करने के लिए root बनाना होगा
sudo su or su root यदि आप terminal पर $dollar चिन्ह देखते हैं तो एक सामान्य उपयोगकर्ता उन commands को निष्पादित कर सकता है
मैं ये मानती हूँ कि आपने default installation की है और path में कहीं बदलाव नहीं लाया है जहाँ files सेव हो रही हैं
इस tutorial के लिए मैं लिनक्स इस्तेमाल कर रही हूँ
इस भाग के लिए आपको mouse तथा keyboard का प्रयोग करना और window पर maximize तथा minimize buttons का प्रयोग करना आना ज़रुरी है
एक file की पहली 10 lines को प्रदर्शित करने के लिए हम head command देते हैं उसके बाद एक ascii file नेम देते हैं
चलिए file बनाते हैं
applications> accessories> text editor पर जाएँ
समय की कमी के कारण मेरे पास यह numbers पहले से ही एक और file में हैं
जिन्हें मैं copy और paste करूँगी
file पर hit करें save सेब करें
file को numbers txt name दें और save पर क्लिक करें
इस file को बंद करें
अब applications> accessories> terminal पर जाएँ
अब देखने की कोशिश करते हैं जो file हमने बनाई थी यदि हम उसे let सकते हैं
ls type करें और enter दबायें
हमने यहाँ जो किया उससे हमारी home directory पर सभी files तथा folders दिखाई देंगे
हमने जो file बनाई है उसके कंटेंट्स को पढ़ने के लिए cat command का प्रयोग कर सकते हैं
cat num file नेम को autofill यानि अपने आप आने के लिए टैब दबायें और enter दबायें
चलिए ऐसा ही head command के साथ करते हैं
head numbers txt enter करें
अब पहली दस lines प्रदर्शित हुई हैं
यदि हमें पहली पाँच lines देखनी हैं तो head command तथा file के बीचn5 option का प्रयोग करें
अप arrown5 दबायें और enter करें
अब सिर्फ पहली पाँच lines प्रदर्शित हुई हैं
प्रेज़न्टैशन पर वापस चलते हैं
tail command head command के बिलकुल विपरीत काम करती है यह default रूप से आखिरी दस lines प्रदर्शित करती है
terminal पर वापस जाने के लिए मैं alt + tab alt + टैब प्रेस कर रही हूँ
tail numbers txt
यदि हमें आखिरी पाँच lines देखनी हैं तो tail command तथा file n5 के बीचn5 option का प्रयोग करें
hyphen n5 enter करें
slides पर वापस चलते हैं
एक log file में system में हुए events यानि कार्यक्रम मौजूद होते हैं
auth log file जो लॉगिन होते हैं तथा जो लॉगआउट होते हैं उनका log बनाए रखता है
tail command का सबसे उपयोगी option है –f option का प्रयोग कर log file की tail का अनुसरण करना
यदि log file में एक नई line जोड़ी जाती है तो tail command उसे आखिरी line मानेगा और default रूप से इससे ऊपर दस lines दिखाएगा
terminal पर जाएँ
tailf/var/log/auth log
इस terminal की साइज़ बदलते हैं
चलिए एक और terminal open करते हैं application> accessories> terminal
terminal का साइज़ बदलते हैं
tail आपको एक ही screen पर बता सकें कि log file में tail आखिरी line का कैसे पालन करता है
su की अपने रूप में कोशिश करें enter दबायें
कुछ गलत password दीजिए और enter प्रेस करें
आप देखेंगे कि terminal पर tail जो रन हो रहा है एक नए log के साथ जोड़ा गया है
तारीख और समय निर्दिष्ट करती है कि कब authentication यानि प्रमाणीकरण विफल हुई है
date type करें system की date तथा time को जांचने के लिए enter दबायें
इस terminal को बंद करने के लिए exit type करें
running tail command को बंद करने के लिए ctrl + c प्रेस करें और टर्मिनल को maximize करें
हमने पिछले उदाहरण में सिर्फ auth log file देखी
यह log files लिनक्स में आमतौर पर इस्तेमाल होती है
यदि कोई समस्या है तो लिनक्स system administrator उसकी machine को troubleshoot करने के लिए इन log files में अधिक जानकारी पाने के लिए देखेगा
sort command जैसे कि name से पता चलता है एक फाइल को हमारे लिए दोनों आरोही तथा अवरोही क्रम में sort यानि छांटती है
numbers txt यह हमारी file को आरोही प्रकार में क्रमबद्ध करेगा
ध्यान दें कि कुछ अजीब है यहाँ sort करते वक्त sort बस पहले अक्षर को देखता है इसलिए 1011 & 12 number 2 के पहले at है
इससे बचने के लिए optionn को जोड़े और enter प्रेस करें
अब sort पूरे number को देखता है उन्हें sort करने के लिए
number txt को उलटे क्रम में sort करने के लिए optionr को जोड़ें
इस file में numbers हैं जो दुबारा आए हैं विशिष्ट numbers को निकालने के लिए –u option के अन्य option को जोड़ें
terminal पर जाएँ
अप arrow
u enter करें
पिछली बार दो 2 दिखाए थे और अब सिर्फ एक 2 दिख रहा है
अब हम देखेंगे कि किसी column के आधार पर कैसे एक फाइल sort कर सकते हैं
चलिए एक file बनाते हैं और की इन करें जैसे कि बताया गया है
application> accessories> text editor पर जाएँ
समय की बचत के लिए पहले से ही एक अलग file में data है जिसे मैं copy और paste ctrl + c; ctrl + v करती हूँ
file marks txt नाम से इसे सेव करें सेव save पर क्लिक करें
मैं नहीं चाहती कि कोई भी कम अंक मिलने पर मुझे कुछ कहे
इस file को बंद करें
marks txt file के दूसरी column के आधार पर sort करें
terminal पर जाएँ
space marks dot txt space hyphen t space open inverted commas space close inverted commas space
यहाँ –t delimiter के लिए है और quotes के बीच का space उसे दर्शाता है
hyphen k2 दूसरे column के लिए है जिसपर sort प्रदर्शित होगा
enter प्रेस करें
cat marks dot txt
यह original file है यदि आप देखते हैं कि avir ऊपर bala गया और bala नीचे आ गया है जब हमने दूसरे column के आधार पर sorted किया
cut command का उपयोग एक file से कुछ जानकारी cut करने के लिए किया जाता है
चलिए marks txt में से कुछ names निकालते हैं
terminal alt + tab पर जाएँ
cut space marks dot txt space hyphen d space open inverted commas space close inverted commas space
यहाँ cut command में d एक delimiter है और उद्धरणचिन्ह के भीतर का space delimiter को दर्शाता है
hyphen f2 दूसरे column के लिए enter प्रेस करें
paste command files की समरूपी उत्तरगामी lines को merge करेगा यानि जोड़ेगा
अब numbers txt तथा marks txt दोनों files का प्रयोग करते हैं
terminal पर जाएँ
numbers txt marks txt paste करें और enter दबायें
अब marks txt की पहली line numbers txt की पहली line से जोड़ी गई है
output को concatefile txt नामक file में पुनः निर्दिष्ट करने के लिए हम redirect redirect की का प्रयोग कर सकते हैं
terminal पर जाएँ
enter प्रेस करें
cat concatfile dot txt
अब slide पर जाएँ
यदि हम चाहते हैं कि paste numbers को क्रमानुसार दिखाए टैब द्वारा उसे delimited करें हम –s option का प्रयोग कर सकते हैं
paste hyphen s
numbers dot txt
slide पर जाएँ
spoken tutorial talk to a teacher project का हिस्सा है
जिसे राष्ट्रीय शिक्षा mission ने आईसीटी के माध्यम से समर्थित किया है
अधिक जानकारी हमारी निम्नलिखित वेबसाइट
यह script देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना अब आप से विदा लेती हूँ